और एक छोटा-सा सुखा हुआ पेड़ है जिस पर एक चिड़िया बैठी हुइ --

है और बहोत छोटे-बड़े सभी प्रकार के पौधे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में एक छोटा-सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे एक मूर्ति रखी हुई नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़-पौधे भी --

बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बर्थडे पार्टी की तैयारियां हो रही है।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

इस इमेज में कुछ लड़कियाँ डान्स करती हुई दिखाई दे रही है और बहोत से --

सात लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक बडा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत से लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें तीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और एक पंडित जी भी नजर आ रहे है।